देखने से बहुत अच्छा लग रहा है दुकान--

देखने से फराना लग रहा है या कोई कार्यालय होगा फराना --

कुछ सारी रंग बिरंगी चूड़ियां भी हैं साइड में कुछ कपड़े भी लटक रहे हैं।

एक पक्षी भी ब्लू कलर का है एक पक्षी ग्रीन कलर का लग रहा है एक हल्का सा पिंक लग्ग रहा है देखने में और एक ग्रे कलर का है नीचे किसी --

पर शायद वो रेलवे ट्रेक नहीं हाईवे रोड है।

ये एक पेंटिंग कंपटीशन जैसा दिखाई दे रहा है ये स्कूल में कुछ बच्चे--

देखने से बच्चे के चेहरे को खुशी झलक रही है बहुत अच्छा लगता है इक पेंटिंग कॉम्पिटिशन मुझे--

चिप्स के पैकेट्स हैं डब्बे वाले कुछ पैकेट्स भी लटक रहे हैं एक ट्रॉली रखी हुई है सामने फ्रिज है फ्रिज में बहुत सारी कोल्ड्रिंक है।

एक बड़ा सा टैटू का स्केलेटन वाला पोस्टर भी लगा हुआ है जिसके सल्फर रोज ये एक चाकू सा बना हुआ है छोटा सा इसके सर में लगा है।

पिंक कलर की शॉप बोर्ड लगा है बैनर का और उसके ऊपर--

आसमान साफ और खुला है ना गर्मी है ना धूप है।

सूरज भी ज्यादा धमकीला नहीं लग रहा ।

ये एक जलेबी की प्लेट है जलेबियां गोल-गोल मीठी-मीठी होती हैं।

ये दो बसें खड़ी हैं नीचे सीढ़ियों पे से कुछ लोग बाग उतर रहे हैं आसपास खूब सारे पेड़े हरे हरे --

ये स्कूल है यहां पे कुछ बच्चे क्राफ्ट का काम कर रहे हैं।

और डायनिंग एरिया टी_वी लगा है जो चल रहा है सोफा सेट रखा है डाइनिंग टेबल्स है।

एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट के आजू-बाजू खूब सारे छोटे-बड़े---

यहां पर बच्चों के गुड वियर भी मिलते हैं।

ये एक फैमिली लग रही है शायद प्रेयर करने आए होंगे पीछे जीसस की--

इसमें हर फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है कोल्ड्रिंक्स मिलती है चिप्स मिलते हैं कुरकुरे मिलते हैं।

बहोत से लोग इसको स्टीम करके भी खाते हैं। बहोत से लोग इसको--